ये जहानाबाद का सीन है इसमें माँ ऑटो एजेंसी है जो की पी.जी. रोड जहानाबाद में स्थित है और ये अतुल का है।

पंखा लगा हुआ है दो लोग हैं जो कि सामान खरीदने आये हैं | एक आदमी है जो कि बिलिंग करवा रहा है और एक आदमी है जो की उस तरफ बैठ के कंप्यूटर पर बिलिंग करने जा रहा है | बिलिंग कर ही रहा है मतलब की --

जो की खड़ा है और बात कर रहा है यहाँ एक फोर व्हीलर भी लगा हुआ है जो की सरकारी --

दो लोग हैं जो की एक हाथ में विकेट कीपर एक बैट्समैन लिया हुआ है हाथ में।

यहाँ पर आप देख सकते हैं की आ --

आदमी है बंधा है नेणुवा है टमाटर है गाजर है।